बढ़िया - बढ़िया ई लगा हुआ है अ समझे। और पीछे पहाड़ भी है और बहुत अच्छा त्रिशूल - विरशुल लिए हुए है। बहुत अच्छा लग --

यहां एक बड़ा-सा बिल्डिंग लग रहा है और ये बहुत काफी अच्छा लग रहा है। और एक आदमी है जो काफी अच्छा लग रहा है। बगल में गाछ-वृक्ष भी है। थोड़ा दिवाल भी है और बहुत सुंदर लग रहा है। हरे-हरे पत्ते के छोटे-छोटे फूल के गा--

क्लॉक टावर है जो काफी बड़ा क्लॉक टावर होता है । और ये तो कहीं का भी होगा बट ये हमारे यहां भी है एक नेपाल धरान पड़ता है वहां भी इसी टाईप में है।

ये कटिंग किया गया पत्थर है पहाड़ को बहोत ही खूबसूरत है यहाँ ट्रैवल करने टूरिस्ट लोग आते हैं बहोत ही मजा आ जाता है यहाँ घूम --

और सूरज डूबता हुआ ये शाम का फोटो है। सूरज डूबता हुआ बहुत ही अच्छा लगता है पानी यहाँ पर बैठकर सोचने-वोचने में। और बहुत बीच-बीच में पहाड़ भी नजर आ रहे है पानी के बीच में बहुत ही अच्छा लग--

एक पार्क है जिसमे मनोई लिखा हुआ है। मनोई और कुछ उर्दू में लिखा हुआ है । ये कोई स्कूल या कॉलेज लग रहा है। मौलाना अजान नेशनल क्या पता देखने में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है।